दो तीन चीज है बहुत सारेछोटे छोटेप्लांट हैं ।

और क्या है और यहां तो कुछ नहीं है सामने प्लांटेड किए गए --

बहोत लोग यहां पे खुश मिजाज के आदमी सब हैं बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं आपलोग को ये सब नहीं दिख रहा तब भी क्यों पूछ रहे है।

या फिर सब लोग हॉस्पिटल में जो काम करते हैं डॉक्टर सबके साथ हैं कंपाउंडर सब है।

अब कैसे हिलाएंगे हम बताओ तो जी चलो कोई बात नहीं ठीक ये ह --